यह टॉवर चौक है। इस टॉवर चौक में एक घड़ी लगाई गई है जोकि ऑटोमेटिक चलती है और यहाँ पर बिना इलेक्ट्रिक करंट की चलती है।

यहाँ पे तरह-तरह प्लान्ट्स लगाया गया है जिससे आदमियों को लुभाया जाता है ।

यह एक ए.टी.एम. है इस ए.टी.एम. का नाम बैंक ऑफ इंडिया ए.टी.एम. है यहाँ पर पैसा निकासी की जाती है यह ए.टी.एम. चौबीसो घंटा खुला पाया जाता है।

यह एक तालाब है और इस तालाब में पानी बहोत ज्यादा है और तालाब के किनारे --

बनाया गया है जिसमें आदमी लोग आके बैठते हैं और आनंद लेते है यहाँ पे बहुत सारे बुद्धे लोग आके शाम में गप भी करते हैं एक दूसरे से अपने बात को शेयर करते हैं जोकि बहुत अच्छा प्लेस है।

लीची के पौधे के बारे में रिसर्च करते है और किसान लोगो को इसके बारे में जागरूक करते है।